इस फोटो में मुझे पंखा दिखाई दे रहा--

छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी कार दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे चारों तरफ जालिया दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे जग दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे बहोत सारी मूर्तियां दिखाई दे रही हैं।